बस पीला कलर का है यह।

यहां पर खेल रहे हैं।

बच्चे लोग कुछ खेल रहे है जिसमें--

सामने वाले आवाज पर।

स्टाइल बहुत ही सुंदर --